यह पिक्चर हमें किसी गौशाला की नजर आ रही है।

आस पास हमें पेड़ लगे हुए नजर आ रहे हैं।

आदमी भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

डी_जे बी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

दुकान के बाहर हमें दो ट्रैक्टर और एक कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

आस पास कुछ पेड़ लगे हुए भी नजर आ रहे हैं।

इस पिक्चर में हमें एक दुकान नजर आ रही है।

इस पिक्चर में हमें एक गार्डन नज़र आ रहा है।

पास में हमें एक स्टेज भी बना हुआ दिखाई दे रहा है।

इंडिया पोस्ट हाउस की नजर आ रही है।

गार्डन में हमें कुछ बच्चे झूले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।

आस पास हमें कुछ टैक्टर ट्रालीयां भी दिखाई दे रही है।

यहां पर कुछ लाइट्स बी चलती हुई नजर आ रही हैं।

यह पिक्चर हमें किसी क्रश की नजर आ रही है।

आस पास बहोत सारे खिलौने और झूले लगे हुए दिखाई दे रहे है।

आसपास बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए नजर आ रही हैं।

यहां पर हमें बच्चे योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

आस पास में एक टीचर भी बैठे हुए नजर आ रही है।

यह पिक्चर हमें किसी रेलवे स्टेशन की नजर आ रही है।

पास में हमें कुछ पेड़ भी लगे हुए नज़र आ रहे हैं।